सामने एक रोड दिखाई पड़ रही है जो कि ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे साइड् में ढलान में पत्थर लगे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सामने कुछ मिट्टी इकट्ठा हुई दिख पड़ रही है। साइड में कुछ बालू के टीलें जैसे दिखाई पड़ रहा है।

प पानी ब्लू रंग का दिखाई पड़ रहा है जगह-जगह ब्लैक रंग का भी दिखाई पड़ रहा है पीछे कुछ पेड़ लगे हुए हैं जो की ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहा है ऊपर आसमान ब्लू रंग का दिखाई पड़ रहा है।